दू जीप खड़ी दिखाई दे रही है और तीन-चार जीप और खड़ी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रा आसमान में बादल दिखाई दे रहे है खंबा दिखाई--

एक रोड दिखाई दे रही है रोड के सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर औरे-- अंज--

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमे कार्टून चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्टून टीवी मे--